नेशनल बैंक है जो कि यहाँ पे ए.टी.एम प्लस भी है।

एक घायलों से संबंधित जो भी समान है --

गया है जो कि डिस्ट्रिक्ट में समिति की बहोत बैठक होती है।